एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड की मिट्टी काली दिखाई दे रही है कुछ हरी-भरी उगती हुई दिखाई दे रही है एक गुलाब का --

एक बड़ा-सा प्लेस दिखाई दे रहा है प्ले --

जैसे भी गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं परदे लगे हुए दिखाई दे रहे कैमरे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं स्टेज पर एक कुर्सी --

झंडे लगे हुए दिखाई दे रहें हैं ऊपर से बिजली के केबल खींची हुई दिख --

एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारे गुब्बारे और लाइट से सजे हुए दिखाई दे रहे है गुब्बारो में --

मक्के लगे हुए दिखाई दे रहे सरसों भी लगे दिखाई दे रहे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा लड़के के कान में हैड फ़ोन लगे हुए दिखाई दे रही वो सेल्फी --

इस इस सम्मलेन का एक बोर्ड लगा दिखाई दे जा रहा है जिस पर भीम-भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही।

दे रही है जिन पर लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग इधर-उधर घुमते दिखाई दे रहे हैं एक स्टेज बना दिखाई दे रहा है स्टेज पर का --